बाजू में एक पेड़ है एक अंकल है जो की रंगोली बना रहे है। ध्वज रोहन की तयारी चल रही है काफी सारे लोग खड़े है।

तीन फ्लोर की एक बिल्डिंग बानी हुए हैं और ऊपर एक बोर्ड लगा है सेकंड फ्लोर पे गोल्ड लोन मुथुर फाइनेंस रेड और येलो कलर से ।

बहुत बड़ा तालाब है जिसमे एक शिप है बहुत बड़ी मतलब दो मंज़िला की शिप दिख रही है जिसमे रूम बने हुए है अलग अलग।